एक रहमान कि इमेज है जहाँ पर यहाँ कुर्सियाँ दो लगाई हुई हैं ।

बहोत ही ये देखने में अच्छे लग रहे हैं और इनकी प्राइज भी बहुत कम है |

यह एक डांसिंग फ्लोर है।

यह एक डी_जे साकुण्ड का --